इनके बोर्ड पर लिखा गया है फैशन फाइट टेलर्स ।

यहां पर एक ए_टी_एम के सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है।

वह है जो की एक बहुत सुंदर सी कंपनी का सामान लग रहा है।

यहां पर बहुत सारे सोफे भी हैं बाहर की ओर एक हरे रंग का ग्राउंड है जहां पर बहुत सारे सोफे हैं।

यहां पर दो सीटे भी रखी गई है।

इसका नाम रखा गया है मां की रसोई।

इनमें से कुछ पुरानी है और कुछ नई भी है।

यहां पर एक फैक्ट्री दिखाई गई है जो की नीले रंग की है।

इसके अंदर ही एक हरे रंग का पेड़ भी है और बाहर की ओर एक बिजली वाले खंभे लगे हुए है जी--

कि बहुत सुंदर बनी हुई हैं रात का समय हो चुका है और लाइटें भी जल रही हैं।

और बाहर की और ये एक स्विमिंग पूल भी बना रहा है।

बीच में एक फोटो लगी है।

यहां पर एक व्यक्ति एक रिक्शा के ऊपर चढ़ रा है और उसके --